गाड़ी का यहाँ पे साफ करने के लिए पाइप वाला कुछ रखा है ये गाड़ी मशीन से उठा हुआ है इसके पीछे टीना है बाकी एक न ऊपर भी टीना है मशीन से उठा हुआ गाड़ी है।

इसमे से गड्डा खोदा एक वाइट कलर का टीशर्ट पेहेन के एक मजदूर नीचे एक--एक आदमी नीचे ताक रहा है एक आदमी वाइट कलर का टीशर्ट ब्लैक पैंट पहन के पीछे खड़ा है एक ब्लू कलर का टीशर्ट ब्लू कलर का पैंट पेहेन के हाथ मे पेपर लेके वंहा खड़ा है।

बड़ा-बड़ा पत्ता सब है एक लाइन से आगे मे दूसरा तरह का पत्ता है ग्रीन कलर का यहाँ रेड कलर का वहा दूर मे पेड़ दिख रहा है पानी बट रहा है ।

खाली एक पानी एक पंख लगा हुआ है लाइट है बोहोत सारा एक्सएरसाइज करने वाला ये चेयर वैयर रखा है तीन-चार गो चेयर है वाइट कलर का --

फिर उसके सामने एक खिड़की है खिड़की मे शीशा है फिर यंहा एक आईना है आई-आईना से पीछे के तरफ दिखता है दिख रहा है एक बॉडी बिल्डर वाला फोटो |

इसमे काई लगा हुआ है सामने छोटा स खेत दिख रहा है इसमे ग्रीन ग्रीन पत्ता उगा हुआ है बांस का पट्टी सब चारों तरफ गाड़ा हुआ है।

वाकी उसके चारों तरफ दीवाल है दीवाल बेकार सा दीवाल है ये मूर्ति एक नंबर है। और --

यहाँ आगे से भी थोड़ा सा सारा घिरा हुआ है यहाँ पर कचरा सा स्पिन है बोहोत सर पोल है आदमी सब है एक दूर मे लाइटहाउस दिख रहा है ओर बहुत सारा बहुत दूर तक कुल्ला--

यंहा पे एक नंबर सा पार्क है पार्क मे बच्चे लोग खेल रहे है एक बच्चा वंहा सिसौ पर चढ़ा हुआ है दो-तीन बच्चे पीछे है एक बच्चा लटक रहा है।

यहाँ पे टमाटर है। बोहोत सारा कुछ रेड टमाटर है कुछ हल्का रेड है कुछ हल्का पीला है कुछ ग्रीन है कुछ हल्का ग्रीन है।

यहां पे एक शॉपिंग बर्तन का दुकान है। यहां पे बर्तन मे ऊपर लाइट वाइट जड़ लिया है यहां पे बोहोत सारा बर्तन सब है।

ऊपर आसमान है यहाँ साइड मे पेड़-पौधा दिख रहा है इस दुगो सामने रोड पे वाइट कलर का लकीर बना हुआ है।